बैगनी कलर भी हैनीचे कुछ लोग खड़े हुए है और अगल-बगल पेड़-पौधे दिख रहे है नीचे के घास हरे-भरे है और पीछे भी कुछ पेड़ है लोहे के समान है।

यह एक मकान दिख रहा है कुछ ऊंचा मकान दिख रहा है बहुत ही सुंदर इसके लेफ्ट साइड मे कुछ पेड़ है राइट साइड मे भी पेड़ है और मकान दिख रहा है।

इसपे की एक व्यक्ति चढ़ भी रहे है और राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ बड़े-बड़े घर है और स्टिकर चिपकाए हुए है उसपे---

यह एक स्कूल जैसा दिख रहा है जो की बिल्कुल खाली है यहां पस कोई नहीं है देखने मे लग रहा है के ऊपर एक छत पे सोलर प्लेट रखा हुआ है।

सर्विस को और कुछ वक्त ही इसमे चलते हुए दिखाई दे रहे ऊपर लोहे और कर्कट से पूरा इसको बनाकर के बिछाया गया है और बगल मे भी है।

बोहोत सारे चेयर लगे हुए है और कार्पेट बिछे हुए है हरे कलर के और ऊपर ये ब बनाया हुआ है कपड़े का बांध करके व्हाइट और ऑरेंज कलर का और इसके सामने लाइटस् भी लगे हुए है।

यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है पूरा खाली है रोड दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ बोर्ड दिख रहे है व्हाइट कलर के और फूल से बनाया हुआ चीज बहुत ही सुंदर है।

और इसके अगल बगल पौधे भी है कुछ और सामने पेड़ भी है कुछ दूर मे बीच मे कुछ मकान छोटा सा दिख रहा है जो की फिनिश नहीं किया हुआ है और ऊपर तार भी गुजर रहे है।